ये फील्ड बहुत ही बड़ा फील्ड है इस फील्ड में बच्चे लोग अपना खेलते हैं और इसमें तरह-तरह के झूले लगे हुए हैं बच्चे सब को खेलने के लिए।